हमारे सामने बहुत सारी हरी मिर्च दिख रही हैं हरी मिर्च का यूज़ हम लोग सब्जी बनाने सब्जी में डालने के लिए करते हैं जिससे हमारी सब्जी टेस्ट बढ़ता है हमारी सब्जी तीखा होता है और सब्जी अच्छा लगता है जो सबको बहुत पंसद होता है।

होटल रायसेन जिसमें अ हम लोगो को जो भी जरुरी चीज़ है वो खाने के लिए हम लोग इसमें से खरीद सकते है इसमें सारी डिशेज मिलती होंगी जो सारी अच्छी-अच्छी डिशेज होंगी।

वो सब हम लोग आसानी से यहां पे खरीद सकते है और खरीद कर खा सकते है क्यूंकि ऐसे में हम लोगो का क्या होता है टाइम बच जाएगा और हम लोग आसानी से खरीद के खा सकते है।